यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे यहां पर लाइट जलती हुई दिख रही है।

वह चमक रहा है मुझे यहां पर कुछ झाड़ पौधे हरे कलर के नजर आ रहे हैं।

मुझे यहां पर एक बोर्ड व्हाइट कलर का दिख रहा है दीवाल में।

मुझे यहां साइड में नोकिया लिखा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक व्यक्ति टू व्हीलर में बैठा हुआ दिख रहा है।

मुझे यहां पर एक वाइट कलर की दीवाल दिख रही है।

मुझे यहां पर एक फूल दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर एक देवाल दिख रही है रेड कलर की--

मुझे यहां पर दूसरी स्कूटी का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक इंसान उस कुर्ती में बैठा दिख रहा है।

मुझे यहां पर दुकान के कलर में पट्टे कलर का लाल कलर का गोता हुआ दिख रहा है।

मुझे यहां पर हिम गंगालाल बुक डिपो दिख रहा है लिखा हुआ--

यहां पर मुझे वे लोग व्हाइट कलर के कपड़े पेहने देख रहे हैं।